जिसका स्तंभ काला कलर का है।

दिया गया ईमेज कोई नदी का प्रतीत हो रहा है जिसमें बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है।

एक व्यक्ति ए_टी_एम से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है।

आसमान का रंग नीला है सामने एक पेड़ भी नजर आ रहा है।

उसके सामने एक हेल्मेट रखा हुआ है।

रूम के आगे एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

उसका एड्रेस जो है हरमू हाउसिंग कॉलोनी नियर हरमू चौक इंडियन बैंक रांची और उनका मोबाइल नंबर अंकित है।

एक फ्रिज है एक वेट मशीन है।

इस नर्सरी में दो व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं एक महिला एक पुरुष।

दिया गया इमेज कोई रिसोर्ट का प्रतीत हो रहा है जिसमें की बहुत सारी गाड़ियां अलग अलग कंपनी की दिखाई पड़ रही है कोई लाल कोई उजला कोई काला।

दिया गया इमेज किसी पार्क का प्रतीत होता है।

उसके बगल में एक विंडोज है।

बिल्डिंग के सामने एक ऑटो रिक्शा भी दिखाई दे रहा है जिसपे रैपीडो का एडवर्टाइजमेंट का बैनर लगा हुआ है।

अंदर में बहुत सारे आइसक्रीम के रेफ्रिजरेटर डीप फ्रीजर रखे हुए हैं।